यह ट्रांसफार्मर हमारे बिजली को उत्पन्न करता है इस फैक्ट्री में एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है और एक दूसरा व्यक्ति जो जा --